user login ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है
यहाँ हम सेशन बनायेंगे जिसमें यूजर पेज एंटर कर सकता है तथा वे जब तक लॉगिन हैं तब तक वे पेज पर कार्य कर सकते हैं
किसी भी सेशन को शुरू करने के लिए हमें एक फंक्शन की आवश्यकता होगी जो है start session
यह start session है या session start इसे तुरंत जाँचें
सही एक एरर ! अतः यह session start होना चाहिए माफ कीजिए मैं यहाँ थोड़ा उलझन में था
session start अच्छा अतः रिफ्रेश करें रिसेंड करें और यह दिखायेगा youre in!
हमने सेशन शुरू कर दिया है और यह एक सेशन वेरिएबल जोड़ देता है
अतः youre in! इसके बाद मैं लिखूँगा click here to enter the secret नहीं the member page अच्छा
और यह member dot php नामक पेज के लिए लिंक बन जाता है
संक्षेप में यदि हम सही डेटा भेजते हैं हम लिखने जा रहे हैं click here to enter the member page जिसे हमने अभी तक नहीं बनाया
मैं यहाँ आपको याद दिलाता हूँ कि हमने यहाँ अपना session start बनाया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है
हम सेशन बनाने जा रहे हैं और यह करने के लिए मैं शुरू करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ the dollar चिन्ह underscore session और फिर कोष्ठकों में स्क्वेर कोष्ठकों में हम इसे सेशन नेम दे देंगे
मैं इसे username कहूँगा और वह हमारे username के समान होगा मेरे ख्याल से मैं लिखूँगा dbusername क्योंकि वह डेटाबेस से सीधी वेल्यू है
हमारे पास अपना सेशन सेट है
जब तक यूजर खुद के ब्राउजर में है न कि जो ब्राउजर हम उन्हें देते हैं फिर जब हम किसी भी पेज में अपना सेशन एको करते हैं यह सेशन के रूप में सेट होगा
इसको प्रमाणित करने के लिए मैं एक नया पेज बनाऊँगा
यह member dot php पेज होगा
अतः मैं इसे member dot php के रूप में सेव करूँगा
यहाँ मैं लिखूँगा echo और मैं username session एको करूँगा
वास्तव में मैं शुरूआत में welcome और अंत में इसको अधिक सूचक बनाने के लिए एक विस्मयादिबोधक चिह्नexclamation mark जोड़ता हूँ
जब तक हम लॉगिन हैं यह इस कमांड को यहाँ रन करना चाहिए हमारे द्वारा बनाये गए किसी भी अन्य पेज पर अपने username के लिए अपने ब्राउजर में अपने सेशन को सेट करके
यदि यहाँ पर कोई अन्य पेज है और आप सेट करने के लिए इस कोड का उपयोग करते हैं यह कार्य करेगा
आपको जरूर यहाँ इस फंक्शन की आवश्यकता होगी
अतः आपको प्रत्येक पेज में session start की आवश्यकता है जिसे आपने सेशन में बनाया या घोषित किया है
यहाँ हम रिस्टार्ट करते हैं मुख्य पेज पर वापस चलते हैं
मैं alex और abc के साथ लॉगिन करूँगा log in क्लिक करें
youre in! मेम्बर पेज में एंटर करने के लिए यहाँ क्लिक करें अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है मैंने मेरा सेशन सफलतापूर्वक बना दिया है
यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ हमें welcome! मिलता है हमें केवल वही मिला देखते हैं क्या हुआ
वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या गलत किया यह username होना चाहिए
मैं यहाँ कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने यहाँ डबल इक्वल टू चिन्ह डाला जो कि गलत हो सकता है
अब यह कार्य करना चाहिए अपने index पेज पर वापस जाते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं जैसा हमने पहले किया
लॉगिन ओके यह दिखायेगा youre in! मेम्बर पेज में एंटर के लिए यहाँ क्लिक करें यहाँ क्लिक करें और यह दिखायेगा welcome alex!
अब मैं वापस लॉगिन पेज पर जाऊँगा
अधिकतर लोग सोचेंगे कि सभी डेट खो गया है
यदि मैं वापस मेम्बर पेज पर जाता हूँ जोकि member dot php है और एंटर प्रेस करता हूँ यह अभी भी alex दिखाता है
और यदि कुछ सेकंड के बाद मैं अपना ब्राउजर बंद करता हूँ और इसे फिर खोलता हूँ और मैं local host php academy पर जाता हूँ फिर मेरे पेज पर वापस आता हूँ जोकि login सेशन है और वापस मेरे मेम्बर पेज पर आता हूँ तो मैं अभी भी लॉगइन हूँ
अतः मेरा यूजर लॉगइन है यदि मैं ब्राउजर बंद करता हूँ मैं अभी भी लॉगइन हूँ जब मैं वापस एंटर करता हूँ
यह बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है यदि आप इस प्रकार से लॉगइन कर रहे हैं
अधिकतर बेवसाइट्स आपको लॉगइन रखने के लिए ऐसा करती हैं
लेकिन अब मैं लॉगआउट पेज बनाना चाहता हूँ
लॉगआउट करने के लिए हमें एक अलग पेज बनाने की आवश्यकता है और इसे logout dot php के रूप में सेव करें
और हमें यहाँ अपना सेशन समाप्त करने की आवश्यकता है
सबसे पहले अपने सेशन को समाप्त करने से पहले हमें इसे शुरू करने की आवश्यकता है
अतः मैं यहाँ session start टाइप करूँगा मैं एक बार इसे निश्चित कर लेता हूँ
अच्छा और फिर हमें session destroy लिखने की आवश्यकता है माफ कीजिए sestroy नहीं destroy
यदि इस पेज को हम यहाँ रन करते हैं यह हमारे सेशन को समाप्त कर देगा
यहाँ मैं एक अनुकूल एरर मेसेज youve been logged out click here to return टाइप कर सकता हूँ
चलिए मैं वापस अपने index dot php पेज पर एक लिंक बनाता हूँ
अब मैं इसे फिर से जाँचूँगा उदाहरणस्वरूप
यहाँ एक ब्रेक डालें यहाँ मैं लॉगआउट के लिए एक लिंक बनाऊँगा
यूजर को अपने logout dot php पेज पर लिंक देना महत्वपूर्ण है अन्यथा वे नहीं जान पायेंगे कि लॉगआउट कैसे करें
हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यह php पेज से लॉगआउट होने के लिए लॉगआउट लिंक बनायेगा
इस पर क्लिक करें और आपको youve been logged out click here to return मिलता है
मुझे लगता है कि हम लॉगआउट हो गये हैं अपने member page dot php पर वापस जाने की कोशिश करें
हमें यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं मिला
अब आप नहीं चाहते हैं कि इस पेज पर यूजर ऐक्सेस करें क्योंकि वे अब लॉगइन नहीं हैं
अतः यहाँ मैं लिखूँगा session start फिर मैं लिखूँगा if session और सेशन नेम जो कि username है
आगे मैं welcome लिखकर अपना डेटा एको करूँगा else मैं लिखूँगा die
मैं अपने पेज को समाप्त करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा you must be logged in
हम मान रहे हैं कि यदि यह सेशन मौजूद है या यदि यह सही यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके बनाया गया है हम अपने welcome नामक अनुकूल मेसेज को एको कर सकते हैं अन्यथा पेज समाप्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं you must be logged in!
अतः यह सब ट्यूटोरियल के इस भाग में है मैं आपके लिए इसे संक्षेप में बताता हूँ
याद रखिये मैं लॉगइन नहीं हूँ तो मैं लॉगिन करता हूँ
मैं लॉगिन हूँ यहाँ मेरा मेम्बर पेज है मैं लॉगआउट कर सकता हूँ मैं यहाँ वापस आता हूँ
अब जैसा कि हमने member dot php बनाया दिया है एंटर प्रेस करें
यह दिखाता है you must be logged in!
अतः उदाहरणस्वरूप मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ लेकिन मैं इसके लिए यहाँ क्लिक नहीं करूँगा
मैं अपने आपको member dot php पर फारवर्ड करूँगा मेसेज बन गया है और मुझे ऐक्सेस की अनुमति दी गई है
अच्छा तो अभी के लिए इतना ही यह इस ट्यूटोरियल का आखिरी भाग है यदि आपके पास कोई प्रश्न है मुझे मदद करने में खुशी होगी